फूल पत्ती और पेड़-पौधे है यहाँ दोपहर का समय है बगल से झील बह रही है।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है जहां पर व्यक्ति अपने बिल को कटाने के लिए कतार में खड़े हुए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं।

यह एक कैफ़े के सामने का दिया गया चित्र वर्णन है | जहाँ पे व्यक्ति खड़ा होकर कैफ़े का ये हरियाली का लुफ्त उठा रहा है यह एक मनमोहक ही चित्र है जिसमें यह व्यक्ति काफी ही मज़े के साथ एक चित्र का वर्णन कर रहा है |

ऐसा प्रतीत होता है की ये टेम्पू स्टैंड का है चित्र है यहां पे कई सारे टम्पू लगे हुए हैं टम्पू मतलब आपलोग --

यह एक बुलेट बाइक का चित्र है बुलेट बाइक सबसे ही मस्त होती है बुलेट बाइक रॉयल एनफील्ड से --

उम्म क्रिकेट वालो से अनुरोध है कि कृपया धीरे खेले बाइक वाले सिखने वालो को आप बॉल उल मार देंगे त-तो ऐसे ही उनको चलाना नहीं आता ऊपर से वो गिर उर जाएंगे तो चोट --